इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारे कैमरा है इसके चारों तरफ फील्ड है और दुकाने भी।

घर है जो देखने में बहोत ही सुंदर है यहां पर लोग सब भी है।

इ है और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे ईंट सीमेंट --